बहुत सारा पानी भरा हुआ है यहां पे बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे यहां पे। दिखाई दे रहा है|

यहां पे कुछ लोग लोटे रखे हुए हैं| यहां पे एक पुल दिखाई दे रहा है| यहां पे एक डंडा दिखाई देते हैं बहुत सा उजाला दिखाई जो वहां पे जो पानी है वो बहुत गंदा दिखाई दे रहा है| और भी सारी चीज यहां पर छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं ।

खड़े हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक मोबाइल दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे स्काई ब्लू और रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे है बहुत सारी मशीन्स दिखाई दे रही है।

यहां पे लोग दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक व्यक्ति मोबाइल रखे हुए खड़ा है यहां पर एक कोउचि दिखाई दे रहा है यहां पे नीचे रेड और ब्लू कलर दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारी मशीन्स दिखाई दे रही है।

दीपक से बोहोत सारे केंडल्स दिखाई दे रही है। अगरबत्ती दिखाई दे रही है। बोहोत सारा रेड कलर दिखाई दे रहा है। यहा पे बोहोत ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। यहा पे कुछ ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन दिखाई नीचे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। यहा पे कुछ--

ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है रामा कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है वाइट कलर दिखाई दे रहा है ग्रे कलर दिखाई दे रहा है।